और पीछे घर भी है जो बहुत अच्छा दिख रहा है।

और इसके हाथों पर रेड कलर की मेहंदी लग रही है।

यह फोटो किसी पंखे की दुकान की खींची गई है।

इस फोटो में व्हाइट कलर का रंग हो रहा है।

और यहां पर ऊपर की ओर एक पुल भी है जो कि व्यक्तियों की सहायता के लिए खड़ा कर रखा है।

यहां पर नदी चलती है और यहां पर बहुत ही कम पानी पड़ा हुआ है।

जिसमें कुछ विद्यार्थी ड्राइंग कर रहे हैं।

और यह ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है और इस ग्राउंड में बहुत हरियाली है।

जो की एक स्कूल के बाहर की फोटो है।

और यहां पर एक कपड़े रखने की अलमारी भी है।

इस अस्पताल के बाहर कांच के गेट लग रहे हैं।

और कुछ औरतें भी हैं इसमें पीछे एक थैला टंग रहा है।

और लीची भी जल रही है और हरी लीची भी है और पीली भी है।